और यह सड़क है। सड़क पर बाइक चल रही है उस पर एक आदमी बैठे हुए हैं।

बहुत सारा कपड़ा लत्ते हैं।

और यहाँ पर एक टाँगा टेम्पू भी आ रहें हैं।

यहाँ पर काउंटर भी बनाया हुआ है और फूल भी लगा हुआ है।